एस_बी_आई की बैंक है बैंक के पास में इतने सारे लोग ठहरे हुए हैं वहां पे पोस्टर भी लगा हुआ है यह बैंक --

पोस्टर के नीचे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहां पे आने जाने --

घर का शर्ट पहने हैं लुंगी पहनी जो आज पहनी है वो --

ये कॉफी रखी हुई है वो कुछ लिख रहा है सामने तीन लोग बैठे हुए--

यहां पे एक पोस्टर लगा है मी टू फोन की --

सफाई करी हुई है यहां पे बहुत सारे बैग्स भी है शूज है।

पेटिंग करी हुई है देखने के लिए बेंच भी लगा हुआ है वहां पे चेयर है डाइनिंग टेबल है।

येलो कलर के दीवाला हैं वहां पेदो -तीन टेबल भी लगे हुए हैं।

पेंटिंग के इतने सारे डब्बे लगे हुए हैं पेंटिंग हरी कलर के हैं पिंक कलर के ऑरेंज --

झूला है झूला आ झूले हैं दो वहां पे इतनी सारी छोटी से है वहां पे हरे कलर का --

वहां पे हरे कलर की एक फ्लैड भी रखी हुई है हर कलर का झोला है झोला --

तिल की बॉटल है पाउडर का डब्बा है नंबर वन साबुन है।

चिल का डब्बा भी रखा हुआ वहां पे इतनी सारी चेयर् --

इतने सारे मशीन लगी हुए हैं मशीन लगी हुई है वहां पर एक--

मशीन स लगी हुई है वहां पे कुछ जो सामने एक का कार्यालय इसके पास में ए येलो कलर --

दो पोस्टर लगे हुए हैं एक आदमी डरा हुआ है एक औरत --

किचन कट्टी की फरशी और घर की परशी लगे हुए हैं उसकी शॉप है।

और एक स्कूटी है यहांऔर इतने सारे झाड़ से है येलो कलर का रूम ठहरा ढका हुआ --

हरे कलर की फर्शी है एक आदमी बड़ा करके फर्शी है।

बउ बड़ी लाइट ओ के चेयर रखी हुई है दिखायी दे रहा हैं--

दो तीन साइकिल है ठंडी विचरी करके कि बोलो डरते है नहाया हुआ --

यहां पे एक समंदर है समंदर में ऊपर से पानी गिर रहा है यहां पे इतनी सारी --

ढेर सारे लगे हुए हैं ऊपर से पानी गिर रहा --

एक बड़ी सी बिल्डिंग है पास में और हरे हरे झाड़ --

अअअ एक बड़ी सी मशीन --

और मशीन के पास लेनन सारे जगह पर सारे --

एक हवेली है हवेली के अंदर तीन औरतें जा रही है एक ब्लॅक कलर की साड़ी पहनी है और पनी है बच्चा भी जा रहा है वहां पे तीन चार औरतें बैठी हुई हैं।

क्याअ अअअ हर साल से एक बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग --

एकबड़ा सा रिसॉर्ट है रिसॉर्ट के पास में एक कार लगी हुई है दोदो कार लगे हुए हैंएक स्कूटी लगी हुई --

दो लड़कियांठहरी हुईबैठी हुई हैं दो लड़के क़वाए में सभी गुब्बारे लगे है ।

फुहे नीले कलर का आसमान है झाड़ है बड़े-बड़े टैक्टर --

ये छोटे-बड़े पौधे हैं फतरे हैं लकड़ियां हैं।

गांव के एक ढोल बजा रही है इतने सारे लोग नी --

शॉप है शॉप में इतने सारे बॉक्स लगे हुए --

एक मंदिर है मंदिर के पास में कुछ पोस्टर लगा हुआ है इसके अंदर एक रेड कलर का घर है घर के पास में एक --

ऊपर जाने के लिए फत्तरी यो की पीड़ियां लगी हुई --

नीचे रेड कलर के पथरे लगे हुए हैं दीवार में भी।

एक आदमी यहां पे ठहरा हुआ है ।

कुछ बांध रहा है वहां अ अ यहां पे मेरे साथ--

ये बकेट सामने येलो कलर का घर है घर के पा --